सामने एक गेट जैसा दिखाई पड़ रहा हैं जोकि ब्राउन कलर और ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा हैं सामने एक गेट भी लगा हुआ है जोकि लोहे का लगा हुआ हैं पीछे कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं पेड़ का कलर ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा हैं पीछे आसमान दिखाई पड़ रहा है जोकि वाइट कलर में दिखाई पड़ रहा हैं।

यह एक दुकान जैसा दिखाई पड़ रहा है सामने कुछ रैक दिखाई पड़ रहे है जोके ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है उसमे कुछ कपड़े भी रखे है सामने एक टेबल दिखाई पड़ रही है जो कि येलो कलर में दिखाई पड़ रही है सामने एक रअड भी लगी हुई है एक कुर्सी दिखाई पड़ रही है जो कि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रही है।

यह किसी शॉप का है यहाँ पर बहुत सारा सामान दिखाई पड़ रहा है बहुत सारी रैक दिखाई पड़ रही है उसपे सामान रखा हुआ है सामने एक पिलर दिखाई पड़ रहा है जोकि व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने कुछ सामान ज़मीन पे रखा हुआ है ऊपर लाइट जैसा दिखाई पड़ रहा है व्हाइट कलर का।

पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही हैं नीचे का हिस्सा ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा हैं ऊपर का हिस्सा व्हाइट और ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा हैं ब्लू कलर के शीशे जैसा दिखाई पड़ रहा हैं सामने कुछ सरिया जैसा लगा हुआ है सामने बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैंएक इ रिक्शा भी दिखाई पड़ रहा हैं सामने एक बिल्डिंग का खम्भा दिखाई--

मंच जैसा दिखाई पड़ रहा है जोकि व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा हैं यहाँ अंदर जाने के लिए दरवाजे जैसा बना हुआ हैं ऊपर बोर्ड लगा हुआ हैं जोकि ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा हैं ऊपर कुछ झंडे भी लगे हुए है जोकि येलो कलर और रेड कलर में दिखाई पड़ रहे हैं सामने कुछ खिड़किया भी दिखाई पड़ रही है जोकि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रही हैं।

सामने एक इमारत जैसा दिखाई पड़ रहा हैं जी की तीन मंजिल का दिखाई पड़ रहा हैं सामने कुछ लाइट की तारे जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं सामने एक लोहे का खंबा दिखाई पड़ रहा हैं।

एसा दिखाई पर रहा है जो की व्हाइट कलर मे बना हुआ हैं सामने एक रेलिंग लगी हुई हैं वहां एक आंटी खड़ी हुई हैंनीचे एक ई-रिक्शा दिखाई पर रहा हैं जो की येलो कलर रेड़ कलर मे दिखाई पर रहा हैं सामने एक गेट दिखाई पर रहा है जो की ब्लू कलर मे दिखाई पड़ रहा हैं वहां पर एक गाय भी खड़ी हुई हैं सामने कुछ लोग--

जैसा दिखाई पड़ रहा हैं यहां बहुत पुराना बना हुआ है जो की रेड़ कलर मे दिखाई पर रहा हैं सामने कुछ गोल गोल चबूतरा जैसा बना हुआ हैं जो की ब्लैक कलर अ ग्रे कलर मे दिखाई पड़ रहा हैं सामने कुछ इटे दिखाई पड़ रही हैं जो की ब्लैक कलर मे दिखाई पर रहा हैं यहां अंदर जाने के लिए दरवाजा जैसा बना हुआ हैं।

यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई पर रहे हैंजो की ग्रीन कलर में दिखाई पर रहे हैंसामने एक खंभा दिखाईं पर रहा हैंजो की बिजली का --

बड़ी से इमारत दिखाई पर रही है जो के ग्रीन और व्हाइट कलर मे दिखाई पर रही हैं सामने मीनार जैसी दिखाई पर रही साइड मे छोटी मीनरे पर रही है सामने एक रोड जैसी दिखाई पर रही हैं जोकि ग्रे कलर मे दिखाई पर रही है सामने एक रोड दिखाई पर रही हैं।

पिक्चर में बहुत सी कुर्सियां दिखाई पर रही हैं जो की ग्रीन कलर ब्राउन कलर की दिखाई पर रही हैं यहां पर जीने भी दिखाई पर रही हैं जोकी ब्राउन कलर मे दिखाई पर रही हैं सामने बड़ी स्क्रीन दिखाई पर रही है जो की ब्लू कलर मे दिखाई पर रही हैं यहां पर कुछ लाइट भी दिखाई पर रही हैं।

एक मकान दिखाई पर रहा हैं जो की येलो कलर का दिखाईं पर रहा हैं वहां पर एक दरवाजा भी दिखाई पर रहा हैं ब्लू कलर मे दिखाई पर रहा हैं सामने एक कुत्ता जैसा आता दिख रहा हैं सामने जीनी दी हुई हैं ऊपर जाने के लिए सामने गुम्बज जैसा बना हुआ है जो की व्हाइट कलर मे दिख --